नीचे कारपेट बिछा हुआ है। एक गद्दी भी बिछी हुई है। यहाँ पर बल्फ वगेरा दिख रहे है इलेक्ट्रॉनिक के सामान में।

कुछ फैन टाइप में भी दिख रहा है सा बाहर किसी मशीन रोलर वगेरा खड़ा छोटी सी घास जमी है बाजु में रेत मिट्टी पड़ी हुई है यहां पर।

यह एक कोर्ट टाइप मे लग रहा है गवरमेंट यहां पर काफी सारे ब्लोक्स बने हुए है जो भी दिख रही है बहोत पुरानी है।

बने हुई है सामने दो कार खड़ी हुई है एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है बाजुमे मे येलो कलर की है यहां काफी ज्यादा पेड़-पौधे लगे हुए हैं पनि की टंकी रही है एक झंडा दिख रहा है।

और यह एक घर बना हुआ है जिसमें ऊपर सीट लगी हुई है पाइप दिख रहे है लोहे की यहां पे विंडो दिख रही है लोहे की सामने एक बाल्टी दिख रही है।

ये व्हाइट कलर की सामने चेयर रखी हुई है सामने एक लाइब्रेरी का बोर्ड लगा हुआ है लोहे का पीछे लकड़ी का चेयर रखी हुई है आम का पेड़ लगा हुआ है नीचे मिट्टी-मिट्टी है।

मॉर्निंग का टाइम है अभी पानी काफी साफ़ है काफी सारी शिप चल रहीं हैं यहाँ पे नदी पर।